और कुछ बाउंड्री छोटी सी बनी है जो ब्लू और येलो कलर की भी है।

और एक बस खड़ी है जो व्हाईट और ब्लू कलर की है इसमें बहोत सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं।

और यहां पर एक रेड कलर का घर भी बना है ए--

और पूरे हॉल में बहोत सारी लोहे की चेयर लगी हुई है सिल्वर कलर की।

ब्लू कलर का पर्दा लगा है ऊपर लोहे के रिंग्स लगे हैं व्हाइट लाइट है साइड में व्हाइट पोस्टर भी--